और साइड पे लंबा से पाइद है और बहुत छोटा छोटा पाइप भी रखे हैं।

और एक इंसान बेलचा पकड़ के रखा है।

इस पिक्चर में बहुत सारा इंसान दिखाई दे रहा है।

और नीचे पे एक टोकरी भी है और तीन चार लड़की लोग हाथ जोड़ के है।

पिक्चर में बहुत सारा चेयर रखे हैं और टेबल भी रखे हैं।

के ऊपर में ग्रीन और रेड का जग भी रखे हैं।

भी लगा के रखा है।

में एक बड़ा सा एक डंपर है।

और साइड पे रेड कलर का लोहा भी है।

और सी_सी_टी_वी भी लगा के रखा है।

और टीना के ऊपर में थर्माकोल रख के हैं और मिट्टी में भी थर्माकोल रख के हैं।

रस्ता में बड़ा सा एक गेट बना के रखा है।

ये पिक्चर में रास्ता में बहुत सारा इंसान चल के हैं।

ऑफिस का अंदर में बहुत सारा--

टेबल पे वाइट कलर का बेडशीट बिछा के रखा है।